पूजा कर रहे है और काफी लोगों की भी भीड़ है और यहाँ पे काफी मुसलमान भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर --

एक फोर व्हीलर गाड़ी की दुकान है जहाँ पर हर तरह की गाड़ियां सही की जाती है सुधारी जाती है और और दुकान के बाहर काफ़ी गाड़ियां भी खड़ी हुई है।

इस जिसके ऊपर बोर्ड में लिखा है डाक घर और इसके अंदर बहोत सुंदर गार्डन पेड़ पौधे भी लगे हुए --